यहां सेंटिंग बन रही हुई है दिन का टाइम है यहां मलबा पड़ा हुआ है यहां हल्की-हल्की धूप भी आ रही है।